मॉल में पिक्चर्स लगी हुई हैं और यहाँ पे टेबल्स काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट की हुई है। चेयर टेबल्स के में चार-चार चेयर लगे हुए हैं।

सीढ़ी है जोकि लोहे की है और ये लाइब्रेरी में जाने की एंट्री गेट है और इसके बाहर एक जेरॉक्स की दुकान भी है।

खाने की चीज़ें फूड्स अवेलेबल है। ये फूड जंक्शन जो है काफी सुंदर-सी बनाई हुई है। इसके जो फ्रंट का एरिया है --

शीशे की है और ये काफी सुंदर-सा डेक इंटीरियर इनका है।

स्लीपर बस हैं और यहां फुल्ली एसी स्लीपर बस हैं और इसमें के बाहर दो-तीन लोग दिखाई पड़ रहे हैं और एक ओटो भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पे दिखाई पड़ रहा है। मैं देख पा रही हूं कि एक कैफे है।

और खाना को एन्जॉय कर --

और ये बकरियों को रखा गया है जोकि ग्रीक की एक बाउंड्री के अंदर रखा गया है।

बाउंड्रीज दी हुई है और यहां पे एक आ एक लड़का है जिसने ब्लू कलर की शी कुर शेरवानी पहनी हुई है।

और यहां पे सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी स्फ्रेंट के सामने में एक बकेट रखी हुई है जिसमें कि पेड़ है।

यहां पे देख पा रही हूं कि एक सड़क है जोकि काफी सुनसान-सी सड़क दिखाई दे रही है। इस सड़क के दोनों साइड पे --

जंगल टाइप से है और यहां पे कुछ पेड़-पौधें भी है जोकि काफी सूखे-सूखे पेड़ नज दिखाई पड़ रहे हैं और ये सड़क काफी --

जोकि फलों और सब्ज़ियों और फूलों की मंडी है और यहां पे कुछ लोग बैठ के फूल को फूल की काफी सुंदर-सी मालाएं बना रहे हैं और इसके सामने में एक --

पोल पे काफी ऊंची पोल पे लाइट्स लगी हुई हैं और ग्राउंड की एंट्री गेट जो है वो काफी सुंदर दिखाई पड़ रही है।

और यहां पे जो वॉल है वहां पे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं और पानी किस पीने की काफी सारी चीज़ें घड़े वगैरह रखे हुए हैं।

और यह जैसा कि एसबीआई एटीएम के बाहर हमेशा से भीड़ लगी होती है। उसी त पर उसी तरह से एसबीआई बैंक के एटीएम में भीड़ लगी हुई है। दो लेडी हैं।

जोकि एटीएम में जाने की लिए है जो एटीएम में जाने की तैयारी में है और कुछ लोग ऑलरेडी से लाइन पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और इस इस पंडाल के अंदर में एक घर है जोकि व्हाइट कलर की है और इस पंडाल पे दो आदमी खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं और पंडाल के --

और यहाँ मैं देख पा रही हुं एक मार्किट है मार्केट पे एक लक्ष्मी मिइइइ लक्ष्मी दुकान है जोकि शॉप है।

टूरिस्ट इक प्लेस है और इसके बाहर में --

और ब्राइड और ग्रूम बिब एक साथ बैठे हुए हैं और यहां फेरों की तैयारियां हो रही है और मंडप काफी सुंदर से सजे सजा हुआ है और पंडित जी जो है --

यहां पे गाय में शोरूम के जो मैनेजर है वो लोगों को स गाड़ियों के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं और गाडियां जो हैं --

वो पिकअप भैन कार मारुति और भी कई तरह की गाड़ियां हैं इस शोरूम में। उप अवेलेबल हैं।

और इस कॉफी स्टॉल में कॉफी के साथ-साथ बिस्किट्स भी हैं और यहां पे कुछ लोग हैं जोकि कॉफी पी रहे हैं और ये ठंडी की मौसम है।

स्टेशन बिल्कुल भी खाली है। यहां पे एक ट्रेन है जोकि फिफ्थ नंबर प्लेटफार्म पर लगी हुई है और ये ट्रेन जो है वो मालगाड़ी है।

और मैं यहां पे देख पा रही हूं कि एक पेट्रोल पंप है जोकि एचपी पेट्रोल पंप है और ये जो पेट्रोल पंप है वो हाईवे पे बनाई हुई है।